एक ब्लैक कार है।

कि एक मैदान है उसमें एक बिल्डिंग है उसमें कुछ काम हो रहा है।

सीमेंट काम हो रहा है लड़की के कुछ ढांचे हैं।

कुछ टीवी है सामने दो लाल कुर्सी है।

सामने पर्दे लुगे हुए हैं।

बहुत से लाइन में पड़े है।

ये एक हॉल है सामने परपल की दीवार है।

नीचे फ्लावर से सजा हुआ है।

हिंदी में लिखा है इंग्लिश में भी लिखा है।

एक फ्लावर का पॉट है।

कुछ मुर्गियां हैं एक आदमी बैठा है।

ये एक रूम है इसमें सोफा पड़ा हुआ है दो कुर्सियां रखी हुई है।

आदमी एक औरत खड़े हुए हैं।

ये एक मॉल है उसमें एक टेबल लगी हुई है।

ए_टी_म का स्टेट बैंक का--

ये ब्राउन कलर की बिल्डिंग है।

लकड़ी के खंबे बने हुए है।

काली गाड़ी जा रही है एक औरत क्रॉस कर रही है।

ये बच्चों का गार्डन है नीचे मिट्टी है एक साइड घांस है।

कुछ कचरा पड़ा हुआ है।

एक रॉड लगा हुआ है।

यहां पे एक ग्राउंड है।

वाइट कलर की शर्ट पहनी है।

एक आदमी कुर्सी बैठा है।

चाहते है जिसमें कलरफुल है ब्लू कलर रेड कलर येलोकलर ---

ये एक गार्डन है जिसमें लकड़ी के टेबल बने हुए है।

वो सेटिंग करने लगे हुए है।

पीछे एक बिल्डिंग है जिसका रंग सफेद है।